भेर फणा हम तें भोत सारा पैकेट छन दिखेणा केलॉगस का पैकेट छन हम तें दिखेणा रस का पैकेट भी छन रख्यां पिछाड़ी हम तें होर भी भोत सारो सामान जु की सेफ मां छा रखयूं।

वै का समणी हम तें एक लम्बी सी रोड छन दिखेणी रोड का किनारी हम तें एक लाल रंग की गाड़ी भी छ दिखेणी वे का आस पास हम तें कुछ डाला बुर्ता छन दिखेणा जु पर की हरयाँ हरयाँ पत्ता भी छन आयां।

किनार बटि हम तें एक कुर्सी भी छ दिखेणी रिसेप्शन मा जी बोर्ड भी लग्युं जे पर सैलून लिख्युं किनार बति हम तें एक सेल्फ भी दिखेणु जे पर अलग अलग बालों कु सामान रख्युं।

जु की घास छन आराम से चन अपड़ु और किनार हम देख सकदु की भोत सारा डाला बुर्ता भी छन भ्वां फणी हरी हरी हम तें घास छे दिखेणी।

पार बिटि हम तें भोत सारी गाड़ी भी छन दिखेणी और दूर दूर तक हम ते भोत सारा माकन भी छन दिखेणा बिच बिचम हम तें थोड़ा भोत यख डाला भिन दिखेणा।

ईं तस्वीर मा जी जु छा हम देख सक्दो की यखम हम तें एक बड़ी सी नदी छ दिखेणी।

नदी मा जी हम तें एक लकड़ी की नाव भी छ दिखेणी नदी मा जी हम तें भोत सारा पोथला भी छन दिखेणा और नदी का पार बिटि हम ते भोत सारा मकान भी छन दिखेणा।

ईं तस्वीर मा जु छ हम देख सकदु की ये एक दुकान का भितर कु नजारा छ दिखेणु।